दूर में बहुत बड़ी पहाड़ी दिख रही है और सामने में बहुत सारी छोटे बड़े गज है जो डीप ग्रीन पत्ते और हल्के ग्रीन पत्ते वाले हैं और उसी के साइड में लाल कलर का एक पत्थर पड़ा हुआ है।

और ये पुरे पक्के का पांच वाइट कलर का है नीचे जमीन में घास दिख रही है पीछे तरफ एक रेड कलर का कपडा दिख रहा है और पीछे में बहुत सारे गछ--

बड़े से मछली पड़े हुए है जिनकी आँखे है पर है और काटी भी है और बहोत सारी है साईड में एक बाल्टी रखा हुआ है जो आसमानी कलर का है। सामने में एक पाक --

अदर एक दुकान एह जिस अलमारी मे बहुत सारे सामना रखे हुए दिख रहा है सामने मे एक फ्रिज दिख रहा है जिसमे कांच लगा हुआ है साईड मे एक बोतल दिख रहा है जिसका --

असा जमीन का हिस्सा दिख रहा है जिसका नीचे का अनस्सा काला है जिसमे बहोत सारे गेंदे के फुल लगे हुए है जो की यल्लो ओर ओरेंज कलर के है उस घास के पत्ते ग्रीन कलर के दिख रहे हैं।

जिसमे तिन पराठे रखे है जो की ट्रीएंगल स्टाइल में बने है कुछ रेड रेड कलर उसमे दिख रहा है और कुछयल्लो कलर नीचे का टेबल का कलर यल्लो और काला है हलका सा पीछे के तरफ पूरा काला ही काला।